तस्वीर में एक जुलूस दिख रहा है।

सिलेंडर पंप भी है जो हवा भरने के लिए काम आता है बगल में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

बगल एक में जो पानी इकट्ठा किया हुआ है जो गंदा पानी है।

बगल में एक लकड़ी भी है।

एक ऊपर पोस्टर लगा हुआ है उसको ऊपर लिखा है निशा लेडिस टेलर्स सिलाई सेंटर ।

एक फुटबॉल भी दिख रहा है अंदर बहुत सारे सामान भी पड़े हुए हैं।

यह एक एम_सी_वी का दृश्य है।

और बहोत सारे पेड़ भी लगाए हुए है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बगल में एक और पीला घर है।

यह एक बस स्टैंड का दृश्य है।